और आजू बाजू बड़े बड़े झाड़ा हैं और बड़े बड़े पेड़ लगे हुए और पीछे बड़े बड़े--

बिल्डिंगा भी और यहां पे बम्बा भी लगाए गए है जाली को--

ये एक बड़ा सा हाईवे और ओवर ब्रिज है यहां पे--

ये ए एक जिम की दुकान है और यहां पे पेंट्स की गई हैं राइट साइड में--

वायर भी और यहां पे यह डब्बा भी है और यहां पे पक्का और प्लास्टिक पाइप पड़े और यहां पे --

ये एक घर का काम चल रहा है और यहां पे छोटे छोटे बाउंड्री के--

छोटे छोटे पेड़ उठे हुए और यहां पे बड़े बड़े लाइट के खंभे है और यहां पे पूरा बड़े बड़े पेड़ है ऊपर आसमान दिख रहा है।

ये एक डॉक्टर की क्लिनिक है और यहां पे बैठने के लिए कुरची भी है और इसमें आदमी बैठे हुए है और उसके सामने--

और यहां पे बहोत सारे ब्लू कलर के आदमियों बनाया और वहां पे भी आदमी है और यहां पर बहोत सारे ट्रेंडी भी है नीचे --

यहाँ पे बहुत सारे लइटिंग्स लगाई गई हैं और लेफ्ट साइड में मशीन भी हैं बहुत सारे--

तो बैठने के लिए चेयर भी है और यहां पे ये टैटू की बड़ी सी दुकान है और यहां पे ऊपर गुलदस्तों में लाइटिंग्स लगाई गए हैं यहां पे बहुत सारे कलर --

और उसके ऊपर फथरी कचरा पड़ा हुआ है और लेफ्ट साइड में भी आदमी है और यहाँ पे ये पूरा थूटा फटा है और यहाँ पे --

ये एक बड़ी सी टूरिस्ट गाड़ी है परफेक्ट और आजू बाजू बड़े बड़े बिल्डिंगा है।

यहां पे साडियां भी मिलते हैं और कपड़े भी यहां पर बहोत सारे लेडीज जेंट्स --

एक बड़ा सा अपार्टमेंट बनाया जा रहा है नीचे बहोत सारी मट्टी पड़ी है लेफ्ट साइड मे बॉक्स उठाईया जहां उसमें भी है।

वाइट कलर का पेंट भी मारा गया है ऊपर आसमान भी दिख रहा है।

और ये गेट बंद है और यहां पे बड़ी सी वॉल खींची गई है और यहां सूखे हुए लकड़ियां भी दिख रहे हैं।

यहां पे भी समान पड़ा हुआ बैठने का और यहां पे गया डाला गया है उपर टिन शेड मारा गया और यहां के--

और यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और आजू बाजू आदमी बैठे हुए हैं और पर्दा भी हरे कलर --

चूड़ी की गलियां बनाया गया अलग अलग कलर की यहां पे आइटम्स है बहोत सारे जाले है।

और यहां पे बहोत सारा सामान भी है चाय के कप्स हैं छोटे छोटे गुलगस्ते और पिंक कलर के व्हाइट रेड कलर के फूल--

पेड़ भी लगाए गए हैं ऊपर आसमान भी दिख रहा है आजू बाजू बड़े-बड़े बिल्डिंगा भी दिख रहे हैं यहाँ पे--

यह मशीन्स हैं यहाँ पे नीचे टाइल्स और वो ओलंपिक लिखा हुआ है ऊपर लाइटिंग भी चालू है और ऊपर फोटोग्राफ भी लगाए गए हैं।